ये चित्र कमर्शियल बुक सेंटर का है जहां पर बुक्स दिख रहे है बहुत सारे और एक ऊपर के तरफ एक लाइट लगी हुई है और फोन नंबर राइट साइड लिखा हुआ --

यह चित्र में बहुत सारी घास हैं नीचे की ओर ऊपर की तरफ बादले हैं और आसमान दिख रहा है।

चित्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है जहां पर ग्रिल खुली हुई है।

और बादले भी बहोत अच्छे लग रही है और ये ब्रिज के नीचे का प नीचे है पानी।

एक दुकान खुली हुई है और एक दुकान भी खुली हुई है पर्दे लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ पम्पलेट्स लगे हुए हैं ।

और पानी ही पानी है इसके अंदर--

इस चित्र में बहुत सारे लंबे खम्बे है और कुछ मशीन्स रखें हुए हैं और बहुत सारी लाईटा भी लगी हुई है और मैशिना बहुत ज्यादा रखे हुए हैं।

ये चित्र माता यूनिवर्सिटी का है फिफ्थ गेट और लगा है और बड़ी सी गेट है ब्राउन कलर की और बहुत सारे फ्लैट रखें लगे हैं और खंभा भी लगा हुआ है लम्बा सा।

और कुछ लोग ठहरे हुए है और ब्रिज पे से भी कुछ गाड़ियां जा रही है और कोई लोग भी ठहरे हुए है।

गुड़ा अ एक डोगड़ी लगी हुई है उसके अंदर कपड़े पहना हुआ है।

और लाइट्स लगी हुई है और खंभा लगा हुआ है।